पिंक कलर के पर्दो का बनाया गया है और सामने एक बोर्ड भी लगाया गया है।

यहाँ पर एक बड़े हाल में कलर पेंट का कार्य किया जाता है ऐसा लग रहा है।

टंगी हुई है निचे मिर्ची प्याज़ लौकी भटे इत्यादि सब्जी दिख रही है ऊपर तखत पर--

यहाँ एक सब्जी मार्केट दिख रहा है सब्जियों की दुकान बहोत सारी दिख रही है एक महिला ने पीला सूट पहनी हुई है।

यहाँ पर बड़ी-बड़ी चट्टाने दिख रही है बड़ी-बड़ी चट्टानों के ऊपर से पानी गिर रहा है सूर्य की रौशनी पड़ रही है।

बाजार में बहोत से व्यक्ति दिख रहे है एक व्यक्ति ने काला पेंट और काली शर्ट पहना हुआ दिख रहा है।

ऐसे बहोत सारे फल कैरेट के ऊपर जमे हुए दिख रहें हैं।